चाय का फोटो लगाया गया है| यह बहुत ही सुंदर कैफ़े है| इसमें एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है| यहाँ का कलर व्हाइट है।

ये एक जनरल स्टोर है जिसके नीचे ब्लू कलर पर सुधा लिखा गया है| यहां पर केक लटकाया गया है| यहां पर कोई भी व्यक्ति नजर नही आ रहा है| यहां पर बहुत सारा ब्रेड है।

यह मूर्ति बुद्धा की है जो कि बैठे हुए हैं आंख बंद करके इनका --

ते जो सामने की और से चल रहा है| उसका शर्ट का कलर व्हाइट है और पैंट ब्लैक है।